यहां पे बहोत सारे लोग है बहोत सारी कुर्चियां है।

और एक दृश्य दरवाजे का है।

जिसमें ऊपर में सीलिंग में सजावट का सामान रखा हुआ है।

और रेड कार्पेट जैसा बिछाया हुआ है।

जहां कुछ ब्लाउजेस् लटके हुए हैं।

जिसमें बहोत सारी हरी भरी घास है।

और कुछ लोग खड़े होकर वाटर शो का मजा ले रहे--